जहा पर एक बढ़े से एलीफैंट का स्टेचू लगा हुआ है ।

यहाँ पर बाहर कुछ बाहर साइकिल भी रखी हुई है।

जिनके आइट साइड बहुत बड़े - बड़े पहाड़ है।